पहाड़ के ऊपर कुछ पोधे लगे हुए है।

और नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है पहाड़ के बगल मे कुछ हरे भरे से पेड़ लगे हुए है।

बिल्डिंग की बाहर की दीवारों पर पीले रंग कलर पुता हुआ हैं बिल्डिंग के सामने खाली मैदान सा हैं।

बड़ा सा हरा भरा सा गार्डन बना हुआ है गार्डन के बीच मे सड़क बनी है सड़क के बगल मे स्विमिंग पूल बना हुआ--

बड़ा सा हरा-भरा सा जंगल है जंगल के बीचों बीच थोड़े हिस्से मे कुछ पानी भरा हुआ है।